बहोत ही अच्छा स्विमिंग पूल दिखाया गया है इतना अच्छा तीन चार बिल्डिंग के कलर ब्लू कलर का पानी इतना अच्छा दिख रहा--

और इतने अच्छे अच्छे मतलब अलग अलग--

और ऐसा लग रहा वहां पे कोई भी नहीं दिख रहा बहुत सुन सान जगह दिख रहा है।